एक मकान है मकान में हरे रंग में लिले कलर के पोता हुवा है जामिन ये तो सामान भरा हुआ है लकरी का

बहुत सारा है कत्थे रंग का है सामान --

पेड़ हेंगे टीवी है हरा पीले रंग का व्हाइट कलर का पुता हुआ है हरे रंग के वो सब है।

बहार में हरी-हरी घास हेगी नीला आसमान है।

यहाँ ची चिड़ियाँ घर है यहाँ चारों तरफ दीवार खींची हुई है हरे- हरे पेड़ है तीन गेंड़ा है।